बीच में एक कालीन बिछा हुआ है और गौतम बुद्धा जी का एक बुत बनाया हुआ है।

ये एक खाने के टेबल की तस्वीर है खाने का टेबल शीशे का है।

इसकी एक तरफ दीवार में गौतम बुद्धा जी की मूर्तियां स्थापित की गई है।

बाहर एक पत्थर का गेट है अंदर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है।

कुछ पत्थर के ऊपर एक और पत्थर है जो ऊपर को खड़ा हुआ है।